लोग बैठे हुए हैं और सामने उनके टेबल है जिस पर कई फूल वगेरह रखे हैं।

यहां पर एक आदमी फेशियल करवा रहा है और एक आदमी उसकी फोटो ले रहा है।

यहाँ पर लोग पैसों का लेन-देन करते हैं इसके आगे बोहोत भीड़ लगी हुई है और कई सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक पुस्तक की दुकान है जहाँ पर कई सारी प्रकार की पुस्तकें --

यहाँं पर एक सड़क है जिसके किनारे लोग सामान लेकर --

और यहाँ पर कई गरीब बच्चे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ अलहाबाद की एक शाखा है।

एवं स्पोर्ट्स का सामान मिलता है यहाँं पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।